मंदिर है जिसमें एक मूर्ति रखी होइ है वहाँ बहुत सरे लोग है जो की पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ गोल्डन कलर का चिपका पूरी मूर्ति गोल्डन कलर की है बहार इक गेट है जो की ब्राउन कलर का है।

ऊपर एक लाल किलर कलर की लाइटे जल रही है बगल मे पोस्टर चिपके हुए नीचे रौड है फूल पौधे-पौधे लगे हुए है स्कैनर की फोटो लगी हुई है पीछे बहुत सारे लोग चलते हुए दिख रहे है बाइक है बहुत अच्छा लग रहा है देख के लाइटिंग भी है।